यह एक चाय का स्टॉल है जसी के पोस्टर मैं कॉफी स्टॉल लिखा हुआ है यहा पर दो बिस्किट का दो डब्बा है जो शीशे का है और कुछ लोग है।

यहाँ पर खुले मैदानों में कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं जिसमें कारपेट बिछा हुआ है जो लाल-हरे रंग का है।

यहाँ पर भीड़ है और यहाँ एक घर है जिसके ऊपर होल्डिंग है और उसके होल्डिंग के अंदर वाले होल्डिंग वाले पे लिखा है परिवार कल्याण संस्था पटना |

यह एक बैंक है सामने जिसका नाम एच.डी.एफ़.सी. बैंक है और ये होल्डिंग पे लिखा हुआ है इसके ऊपर में चार बड़ी बड़ी ए.सी. लगी हुईं है।

यह किसी शादी के फंगक्शन का फोटो है जहाँ पर बहुत सारे लड़के है जो फोटो खिचवा रहे है और इसके ऊपर मैं कुछ लड़िया है जो हरे रंग का और उजले रंग का है जो देखने मैं अच्छा लग रहा है।